यह तस्वीर एक घर की है। घर का रंग नीला है। घर के उपर खपड़ा भी लगा हुआ है।

पीला और पिंक रंग का भी घर है इसमें खिड़कियां और दरवाजे भी हैं यहां बहोत सारे लोग भी है।

यह तस्वीर एक शोरूम की है जिस शोरूम का रंग सफेद है यहां पर बहुत सारी लाइटे भी जल रही है।

यह तस्वीर खेत की है जहां पर बहुत सारा घास भी उगा हुआ है यहां बहुत सारी झाड़ियां पेड़ और पौधे भी हैं।

यह तस्वीर सीढ़ियो की है सीढ़ियो का रंग सफेद और लाल है सीढ़ी का बॉउंड्री लोहे का है।

यहा पर बहुत सारी पोस्टर भी लगी हुई है। सामने एक पीले रंग के पोस्टर पर नीले रंग से कुछ लिखा भी गया है।